अअ यह एक बिजी रोड का चित्र है | यहाँ पर सामने में नारियल का पेड़ हैं और इसके इर्द गिर्द अन्य प्रकार के अमअअ पेड़ लगे हुए हैं और सामने में --

घंटी लगी हुई है जहां पर आ जा के दर्शन करके बजा सकते हैं मनन मंदिर के चारों तरफ पेड़-पौधे हैं ऐसा प्रतीत होता है कि एक गांव में एक मंदिर है प्राचीन काल की एक मंदिर है जो गांव के बीचों बीच बनी हुई है।

खेल कूद रहे हैं येयेये खेल कूद रहे हैं इस चित्र को ऐसा देख के प्रतीत होता है कि ये सुबह का समय है और सभी लोग मोर्निंग वॉक कर रहे हैं इसके चारो तरफ ये ये सब अनेक घरों के बीच में बना हुआ है यह मैदान है सभी लोग --

कॉफी पीजिए लुफ्त उठाइए ब्लैक ट्रे ब्लैक कप ब्लैक --